एक मोठ फुलाच दुकान आहे त्यात मोठे मोठे अह हार आहे एखादा गाडीला चडवणारा हार किंवा मोठ्या मोठ्या गणपतीला देवीला चडवणारा असा हार मोठ्या प्रमाणात अडकवलेला दिसत आहे.

हे मंदिर थोडे छोटे असुन त्या मंदिरात भरपुर असे देवांच्या मुर्त्या आहेत.

एक शेत दिसत आहे त्या शेतात तीन मुले काम करताना दिसत आहे त्या रोपांच निरीक्षण करताना दिसत आहेत त्या रोपांना फळ येण्यासाठीची फूल लागलेली आहेत.